हैलो गाइस जैसा की आप यहां पर देख सकते हैं ये एक हॉल का व्यू है और यहाँ पे बहोत ही प्यारा हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन भी किया गया है यहाँ पे रेड एंड व्हाइट कलर के फ्लावर का डेकोरेशन किया गया है। टेबल को भी बहोत ही प्यारे बलून से डेकोरेट किया गया है यहाँ।

कुछ चेयर्स भी रखी नजर आ रही होंगी यहां पर आपको कुछ हेलोजन लाइटस भी नजर आ रही होगीं साइड में आप माइक भी देख सक --

तो गाइस जैसा की आप यहां पे देख सकते है यह इलेक्ट्रॉनिक शॉप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क बहुत सारे प्रोडक्ट नजर आ रहै होंगे।